पीछे दो आदमी एक की शर्ट लाल है दूसरे ने कपाल --

कुछ पेड़-पौधे सुंदर- सुंदर और खुला आसमान सफेद बादलों वाला --

दुकान में बहुत सारी सामग्री है कैरम बोर्ड और बहुत सारी किताबें --

नदी के किनारे जहाँ एक डैम बना हुआ है किनारे से एक कच्चा रास्ता और नदी के किनारे बस हुआ एक गाँव।

उसके बगल में पिंक शर्ट में एक आदमी जो मच्छी ले रहा है। इधर किनारे पीली कुर्ता पहने काली शॉल ओढ़े एक लड़की जो मच्छी ले रही है|

सामने की ओर एक क्रॉस जहां फ़ादर भाषण दे रहे हैं ऊपर छत पर लाल पिंक नीले गुब्बारे एक --

सौंदर्य से भरा द्रिश्य शाम का समय --

एक औरत सामान लिए साथ में उसका पति भी --

हरी टी शर्ट पहने सांवला लड़का सेल्फ़ी खींचते हुए अपने घर के लाल गेट के सामने --

फैविकॉल की छोटी बोतलें रंग बरंगे टेप फैबीस्टिक के पैगेट डोम्स के क्रयोन --

रात का समय सफेद मकान --

व सामने की ओर एक बस जिससे लोग उतर रहें --

मिठाइयों की दुकान वजन नापने वाली मशीन ललीपॉप के डब्बे --

सैलून के बाहर कुछ बेहतरीन पोस्टर सैलून के बाहर एक लाल बाइक एक माइस्ट्रो की लाल स्कूटी और एक आदमी मास्क पहने हुए।

शादी के टेंट का दृश्य सामने की ओर बहोत सी कुर्सी व मेज लगाए हुए।